हमें इस विडियो में फ्रिज नज़र आ रहा है कॉफी नज़र आ रहा है फैन नज़र आ रहा है लाइट नजर आ रहा है।

बेलून नजर आ रहा है वायर नजर आ रहा है।

कैमरामेन नजर आ रहा है और एक टेम्पू नजर आ रहा है।

एक लड़का है जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर का चेक शर्ट पहना हुआ है बहोत सारे पेड़ यहां पे है।

हमे यहा पे एक लडकी नजर आ रही है जो की वाइट और पिंक कलर क फ्रोक पहनी हुई है।

हमे यहा पर एक गेट नजर आ रह है उसके साइड में एक कचरा मेल वाला एक गाड़ी नजर आ रहा है।

हाता नजर आ रहे है बेग नजर आ रहे है।

हमे यहा प एक वाइट कलर का पाइप नजर आ रहा है वहा पे एक झंडा नजर आ रहा है।

वहा पे हुआ है और पाहड पत्थर नजर आ रहा है और यहा पे बहोत सारे पेड नजर आ रहे है।

यहां पे झरना नजर आ रहा है जहां साइड में पत्थर नजर आ रहे हैं।

हमे यहा पे एक डस्टबीन नजर आ रहा है वहा पे एक दुकान नजर आ रहा रहा है वहा पे एक चेयर नजर आ रहा है।

इस डब्बा में चॉकलेट रखा हुआ है उधर बेबी जॉनसन का लाइफ बॉय साबुन रखा हुआ है ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

नीचे में एक चेयर लगा हुआ है बहोत सारे यहां पे ईंटे र रख रखे हुए हैं।

यहा पर एक पक्छी नजर आ रहा है जिसका चोच रेड कलर का है इसका पंख हल्का हल्का पर्पल कलर का है।

मोटरसाइकल नजर आ रह है वहा पे कुछ सेब नजर आ रहे है।

आदमी नजर आ रह अहै जो ब्लू कलर का मास्क पहना हुआ है।

पेड़ सब लगे हुए है साइड में पानी नजर आ रहा है।

यहां पे एक चेयर नजर आ रहा है एक टेबल आ रहा है जिस पे बोतल रखा हुआ है।

साइड में टावल झूला नजर आ रहा हैं तरह की पीला कलर का बल्ब नजर आ रहा हैं।

एक ची टेबल नजर आ रहा है साइड में बहोत सारे पेड़ है।

यहा पर एक मंदिर नजर आ रहा है जिसके उपर एक लाल कलर का बना हुआ है।

वहां पे जो व्यक्ति नजर आ रहा है जोकि पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

हमे यहा पर कुछ किताबे नजर आ रहे है फेन नजर आ रहा है लाइट नजर आ रहा है।

यहा पे एक शेर नजर आ रहा है एक मंदिर है जिसके अंदर एक स्पीकर नजर आ रहा है।

यहा पे एक बतख नजर आ रहा है उसका चोच पिंक कलर का है निचे में एक टेबल नजर आ रहा है।

वह एक इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे में बहोत सारे पेड लगे हुए है।

बहुत सारे चप्पल रखे हुए हैं साइड में नर सिन्हा जी का फोटो बना हुआ है।

हमे यहा पर एक चेयर नजर आ रहा है वहा उसके बगल में बहोत सारे फुल नजर आ रहे है।

वहा पे बाल्टी नजर आ रहा है डस्टबीन टाइप का--

यहा पर हमे एक लाइट नजर आ रहा है उपर में फेन दिख रहा है।

निचे में अभोत सारे टेबल पे साड़ी अब रखा हुआ है सूट सब रखा हुआ है।

पि_सी भी कंप्यूटर भी नजर आ रहा है लाइट भी नजर आ रह है फेन भी नजर आ ही रहा है।

व्ही पे बेठने वाला चेयर भी साइड पे रखा हुआ है।

इसके पीछे में एक वाइट कलर का पाइप है जिसमे एक लगा हुआ है।

यहा पे बहोत सारे टेबल लगे हुए है चेयर लगे हुए है उधर लाइट लगा हुआ है।

व्ही पे वाइट कलर का पा पाइप देखने को मिल रहा है एक घरा देखने को मिल रहा है एक जग देखने को मिल रहा है।

हमे यहा पर एक तार देखने को मिल रहा है।

यहा पर हमे एक बुजुल बहोत सारे लोहे देखने को मिल रहे है टेबल देखने को मिल रहा है यहा पे एक--

हमे यहा पर बहोत सारे फुल देखने को मिल रहे है साइड में एक बास लगे हुए देखने को मिल रहा है जिसपे--

येलो लाइट कलर का है और ब्लैक कलर का पेंट पेहना हुआ है।

टायर का देखने को मिल रहा है उपर एक लाइट बल्ब देखने को मिल रहा है।

ट्रक खड़ा है उसके जस्ट राइट साइड बहुत सारे लोहे के लाइट लगे हुए है ऊपर की तरफ पीछे में टावर लगा हुआ है।

यहा पर हमे एक बहोत सारे सेंट नजर आ रहे है निचे में कवर्ड नजर आ रहे है।

उपर में बहोत अच्छे तरह लाइट भी लगे हुए है सीसा लगे हुए है सब में--

यह एक इंजीनियरिंग स्कूल टाइम है जहा जिसमे उपर एक पानी का टंकी बना हुआ है उसके निचे एक फोरविलर लगा हुआ है।

यहा पे हमे एक झंडा नजर आ रहा है स्कूल के विद्याथी नजर आ रहे है एक सर नजर आ रहे है।

हमे एक झरना नजर आ रहा है जोकि पानी झरनों पर से आ रहा है।

साइड में बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे है निचे में कुछ पत्थर नजर आ रहे है।

पाइप से गेरा हुआ है बाहर में दूध वाला केरेट रखा हुआ है।

बाहर वहीं पर एक बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं स्कूल के चारों तरफ--

ऊपर में फेन लगा हुआ है साइड में बहोत सारे कपड़े लगे हुए है।